यह फोटो ऊंचाई से लिया गया है जहां पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं तथा--

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जोकी किसी घंटाघर जैसे इमारत दिख रही है।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जोकि किसी शहर क्षेत्र का है जहां पर बिल्डिंग दिख रही है साम--

के फोल्ड किए हुए रखे हैं सबका कलर अलग अलग प्रकार का है तथा डिजाइन भी बदली हुई है।

जो कि पैकेज में बंद है तथा क्रीम वैसलीन पाउडर चॉकलेट्स एंड चूड़ियां बोहोत सारा सामान --

जो गमलों में पौधे लगे हुए हैं अंदर का नजारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है जो कि गार्डन टाइप में है और--

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि मंदिर का है यहां पर पंडित अथवा दो लोग और बैठे हुए हैं।

रंग तथा अलग अलग अ कलरों से डिजाइन किया गया --

छवि में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी खेलने के मैदान का है।

तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जोकि किसी होटल अथवा रेस्टोरेंट का है ज--

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी ऐसे स्थान का है जहां पर घर है जिसमें कि काऊ जैसे कि गाय बंधी हुई है।

इन सब का साइज़ अलग अलग है कुछ छोटी लंबी गोल है तो--

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी हॉस्पिटल एयरपोर्ट्स स्थान अथवा ऐसे स्थान का है जहां पर बहोत ही बड़ा हॉल टाइप में बना हुआ है।

जो दूसरी ओर छोर हाल में गिरता है जाके तथा लाइट्स लगी हुई--

तथा लोग आसपास दिख रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं तथा कुछ लोग बैठे हैं आस पास--

जिम एकेडमी का है जोकि बहुत ही बड़ी एकेडमी दिख रही है यहां पर।

जो की एक लाइन से हैं तथा आसपास लोग दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी हॉटेल व रेस्टोरेंट से लिया गया है जिसमें की मेज पर काफी सारे प्लेट्स रखे हैं।

यहाँ पर फूलों की मालाएं लटकी हुई है जो की गेंदा के फूल की भी है त--

तथा बहुत सुंदर दिख रही हैं और और भी गमले यानी कि फूल भी रखे हुए हैं।

तथा आसपास पेड़ पौधे है जो कि कुछ छोटे तथा कुछ बड़े है।

पेड़ों के साइड में बैठने के लिए राउंड दार चेयर बनायी गयी हैं।

जो की माता रानी की है तथा ओम पत्थर पर लिखा हुआ--

बॉटल्स रखी हुई है मेज पर जग रखे हुए हैं तथा--